हमटी जमटी के नाम का एक कोई स्कूल दिख रहा है।

यहां पर पेड़ देख रहे हैं यहां पर घास चर रहे हैं।

यहाँ पर एक टेबल लगा हुआ है यहाँ पर एक कुर्सी दिख रहा है।

यहां पर कुर्सी रखा हुआ--